कुछ ड्रम टाइप के बने हुए हैं यहाँ पे कुछ बड़े पेड़ लगे हैं कुछ छोटे पेड़ लगे हैं। यहाँ पे एक ग्रीन घास है।

कुछ पर टंगे हुए हैं कील से और यहाँ पे बहोत सारे काँच लगे हुए हैं काँच पे बहोत सारे गमले रखे हुए हैं।

और ये यहाँ पे एक ग्राउण्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे ए-ए-ए प्लेटफार्म बना हुआ है यहाँ पर बाइक रखी हुई है ।

प्लेट मे कुछ खाने का समान रखा हुआ है।

यहाँ पे एक हॉल है हॉल मे अ-हं बहोत सारे तबले रखे हैं सितारा रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लड़-लड़कियां खड़ी हुई हैं ।

यहाँ पे एक शॉप है यहाँ एक मॉल में बहोत सारे सामान रखा हुआ है लटके हुए हैं।

यहाँ पे ए-एक नदी टाइप की है तालाब बना हुआ है इसमे बहोत सारा पानी भरा हुआ है।

यहाँ पे एक हौल है हौल में एक टेबल लगी हुई है इससे एक पूरा ढांचा सा रखा हुआ है हड्डी हड्डी का।

यहाँ पे एक पर्दा टंगा हुआ-हुआ है यहाँ पे दो आ स्विच बोर्ड बने हुए हैं इसपे एक दवाई की सीरप दिखाई दे रही है म --